और बच्चों के लिए एग्जाम पैड भी रखे दिखाई दे रहे हैं और पेन पेंसिल भी रखे हैं।

इस दृश्य में ऐ_सी एवं अनेक प्रकार की लाइटें दिखाई गई हैं और यहां पर एक पंखा भी लगा दिखाई दे रहा है।

और कुछ व्यक्ति खरीदने के लिए यहां पर आए हैं कुछ व्यक्ति पैदल और कुछ व्यक्ति मोटरबाइक पर आए हैं किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है।

और पेड़ पौधों को एक महिला पाइप से पानी दे रही है।

और यहां पर लोहे के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर मिट्टी के यहां पर मिट्टी काफी ज्यादा है।

यह एक दुकान है दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।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

स्कूल के गेट के बाहर एक एडमिशन ओपन बोर्ड लगा हुआ है और यहां पर अनेक प्रकार के बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।